प्लेट में कुछ चावल परोसे हुए हैं तथा सब्जी भी डाली हुई है।

जिसको ये लोग फहरा रहे हैं।

बहोत सारी पत्तियां हैं पत्तियों का रंग पीला तथा हरा है।

यहां एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर लोहे का गेट लगा हुआ है।

यह एक स्टेडियम का फोटो लग रहा है।

एक गुलाबी रंग का फूल भी लगा हुआ है।